मैरेज शादी होता है।

ये एक पेड़ है और इधर भी एक बहुत बड़े पेड़ है ये बेर का पेड़ है।